जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किराने की दुकान है जिसमें बहुत ज़्यादा चिप्स कुरकुरे --

ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम का समय है और सड़क पर से कुछ ट्रक जाते हुए दिखायी दे रहे हैं और इन सड़क पर डिवाईडर में पीले और काला कलर किया गया है।

जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँं पर एक बैंच पर एक डॉगी को सुलाया गया है। उस पर नीला हरे कलर का कपड़ा डाला गया है। उस --

इस ग्राउंड के उस तरफ कुछ मकान बने हुए भी दिखाई दे रहे है जो- जिनमें कि सफ़ेद कलर किया गया है।

इनको गोल्डन कलर से डेकोरेट किया गया है। बुद्धा जी को यहाँ पर ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है जोकि बहोत सुंदर लग रहे हैं।

नीचे की तरफ कुछ शटर हैं और इस मकान में बड़े बड़े गेट और खिड़कियां लगी हुई हैं और इसके सामने एक सर्कल सीमेंट का बना हुआ हैं जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।